शॉप है यहां पर पानी का जार रखा हुआ है नजर आ रही है बाजु एक--

यहां पर सलाए नजर आ रही है वाय नजर--

यहां यहां पे घर नजर आ रहे हैं वाइन नजर आ रहे--

ऊपर एक मेला लगा हुआ है मेले में--

मास्क पेहने हुए ठहरे हुए हैं अभी बच्चे भी नजर आ रहे हैं यहां पर बहु--